अ एक आदमी बैठा हुआ है जिसने ब्लू कलर की चेक वाली शर्ट पहनी है।

यह एक बिल्डिंग की तस्वीर है इस बिल्डिंग में दो मंजिल की इमारते है बिल्डिंग के छत पर हमें कपड़े सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं।